और देखिए ओ दूसरे से आदमी बात भी कर रहे है और बहोत सारे गाड़ी भी लगे है।

मंदिर भी है और भोला बाबा के मंदिर है।

और यहां पे बहुत सारे खंभे भी लगे हुए उस घर में।

यहां पे मूर्ति कोई कपड़ा पहनाया गया है।

में बैठने पूजा में शामिल हो गया और देखे यहां पे चाय का गिलास है पानी का बोतल है माजा है स्प्री--

यह डेकोरेशन बहोत अच्छा सजा गया है और बहोत सारे आदमी भी उसमें हैं।

और बहुत सारे गाड़ी भी लगे हुए हैं और बहुत सारे टावर भी हैं।

आप देख रहे हैं यहां पे पुल है और पुल के नीचे बहुत बड़ा नदी है और इसके आगे पीछे बहुत सारा पेड़ पौधा भी है।

और देखे यहां पे बहोत सारे लोग इसको पुरस्कार दे रहे है वैसे डांस बहोत मस्त है।